यहाँ पर कुछ लोग है जो पानी में पूजा कर रहे है विशेष त्योहार की पूजा हो रही है सामने कि तरफ कूछ लाइटे दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ बच्चे है जो स्कूल मे प्रदर्शनी लगा रहे है सामने की तरफ बेंच पर उनकी कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है।

पुल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है लम्बा दिखाई दे रहा है नीचे पानी भी दिखाई दे रहा है काई दिखाई दे रही है पानी के अंदर।

यहां पर एक नीचे की तरफ फ्रेश दिखायी दे रहा है कुछ कुर्सी दिखायी दे रही है एक टेबल दिखायी दे रहा हैसामने की तरफ एक रैक दिखाई दे रही है जिसमे कुछ--

सामन दिखाई दे रहा है यह देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है लाइटइंग में दिख रही हैसजावट दिख रही हैअच्छा दिख रहा है।

काँच का शटर वाला और सामने की तरफ दीवार दिखाई दे रही है दीवार की सजावट भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है देखने में काफी सुन्दर लग रहा है।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

यहाँ पर एक पुल दिखाई दे रहा है पुल पर खड़ी हुई एक बाइक दिखाई दे रही है एक बाइक चल रही है कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहै है पुल पर खम्बों में--

सामने की तरफ कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है पुल की रेलिंग भी--

ये चित्र किसी बांध का दिख रहा है अ यह देखने मे काफी सुंदर चित्र लग रहा है बोहोत सारा पानी बांध के दरवाजों को तोड़ कर निकल रहा है।

एक लम्बा सा पुल भी दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ भी ज पानी बहुत फेला हुआ है प--

हरी हरी और सामने की तरफ आसमान भी दिखाई दे रहा है ये घास पानी और आसमान के कारण यह चित्र काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बांध दिखाई दे रहा है बांध में से होते हुए पानी निकल पानी बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है ब पानी दूर दूर तक फेला हुआ दिखाई दे रहा है।